जैसेकी मे देख रही यहा पर एक इमेज दिखाई दे रही हैं जो कि किसी सिटी कि मुझे लग रही है यहा पर बहुत सारे अलग अलग तरीके बडे बडे बिल्डींग्स दिखाई दे रही है।

साथ हि मे यहापर बहुत सारी गाडिया दिखाई दे रही हू रोड दिखाई दे रही जिसपे बहुत सारी अलग अलग तरह कि गाडिया जा रही है और कूच पेड भी दिखाई दे रहा है।